और पर्दे से कवर एक पिलर दिखाई दे रहा है।

और आसमान दिखाई दे रहा है ।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और एक पोस्टर दिखाई दे रहा है ।

और एक लड़की एक बैग दिखाई दे रहा है। एक कॉपी दिखाई दे रही है।

और हरी घास दिखाई दे रही है ।

और डिओर डीओ के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ।

उ का पर्दा ऊपर दिखाई दे रहा है ।

दूरी पर कुछ घर दिखाई दे रहे है। आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहा।

और एक वाशिंग मशीन दिखाई दे रही --

लगी दिखाई दे रही है और --

बच बोहत सारी बच्चियां दिखाई दे रही हैं और कुछ मैम दिखाई दे रही हैं मैम दिखाई दे रही |